औरत के हाथ में एक गेंद है।

लोहे का मेज दिखाई दे रहा है।

दरवाजे और खिड़की दिखाई दे रहा है।

टेबल और चेयर दिखाई दे रहा है।

टाइल्स का जमीन नजर आ रहा है।

बहोत सारे चेयर नजर आ रहे हैं।

इसमें बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

कुछ खंबे नजर आ रहे हैं।

और एक टेबल नजर आ रहा है बहुत सारा डैस्क बेंच नजर आ रहा--

घर के ऊपर में द हेरिटेज एकेडमी लिखा हुआ है।

लोहे का एक खंबा दिखाई दे रहा है।

यहां में मुझे बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

और लोहे के रॉड दिखाइए दे रहे हैं।

बरी बरी पेर दिखाई दे रहे है।

यहां में मुझे बहोत ही बरे बरे पेर दिखाई दे रहे हैं।

लाल हरा और बैंगनी और सफेद रंग का है।